यहाँ पर सामने टेबल रखी हुई है कुर्सी रखी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देखने से लग रहा कि यह कोई रेस्टोरेंट या होटल वगैरा है और --

टावर लगे हुए हैं डोरी लगी हुई है और यहाँं पर पेड़ भी लगे हुए हैं।

और छोटी भी है सामने से पहाड़ बने हुए हैं और यहां पे बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जो हरे कलर में दिख रहे हैं और यहां पे ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं।

यहाँं पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँं पर बहुत सारे सामान वगैरह दिख रहे है यहाँं पर दुकाने लगी हुई है।

यहाँं पर एक सोमीग कुल पर बना हुआ है। जिसमें पानी भरा हुआ और इसका जो कलर एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है।